यहाँ पर आगे की तरफ बहुत सारे फ्रूट फ्रूट रखे हैं।

नीचे फर्श बना है ऊपर धूप आ रही है।

बाहर की तरफ बॉक्स बॉक्स करके कुछ सामान रखे हैं।

कोने कोने में बोहोत सारे पेड़ लगे हैं आगे की तरफ गेट बना है।

उसके बगल में थर्माकोल का गद्दा दिख रहा है।

नीचे फर्श बना है ऊपर लाइटें आ रही हैं।

जहां पे बाहर की तरफ खिड़कियां ही खिड़कियां लगी है और बीच में जगह खाली--

इस तस्वीर में बहोत ही सारे काले वाले अंगूर दिख रहे हैं।

कार के आगे की तरफ एक आदमी जा रहा है झोला लिए हुए और--

इस तस्वीर में किरन दिख रही है।

खटिए के ऊपर जग और गिलास रखा हुआ है।

बेंच के ऊपर पांच बैग रखे हुए रखा हुआ--

ऊपर सजावटे हो रखी हैं जहां पे चुनरी वगैरह फूल वगैरह रखे --

इस तस्वीर में बहुत ही खूबसूरत समुद्र का नजारा दिखाया गया हैं।

उसके अ की अ किनारे एक रस्ता गया हुआ है जो पुल बना हुआ है।